यह एक मंदिर का दृश्य है मंदिर उजले रंग का दिखाई दे रहा है।

यह सभी का रंग भूरा और उजले रंग का दिखाई दे रहा है।

दिवार में ही एक उजले रंग का बैनर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक मंदिर का दृश्य है।

अंदर में बहोत सारा लाइट जल रहा है और बहोत सारा कुर्सी भी रखा हुआ दिखाई--

नीचे में भी एक उजले और काले रंग का बॉक्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मंदिर उजले रंग का दिखाई दे रहा है।

रूम के अंदर का दीवार हरे रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां पर अंदर का दीवार भूरे और गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है।

आसपास में बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ पौधा भी नजर आ रहा है।

और अंदर में ही एक बड़ा सा मशीन भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।